अच्छा लग रहा है आदमी है।

दो प्लेट चार प्लेट रखा हुआ है दो प्लेट में बिरयानी चावल रखा हुआ है देखने में सुंदर है चाउमीन जैसा दिख रहा है ।